देख सकते है एक पैसे निकालने वाली मशीन यहां पे लगी हुई है। एटीएम मशीन और यहां पे उसके साथ में एक डस्टबिन रखा हुआ है और साइड मे एकदम झाड़ू सा रखा हुआ है और देख सकते है एटीएम के साइड मे एक गेट है गेट मे ताला लगा हुआ है। अच्छे तरीके से और --

और अंडे की कैरेट हैं प्लास्टिक की है और हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टॉफी वगेरा हाजमोला कैंडी हैं और के बोक्सस हैं। स्प्राइट की बोतल रखी हुई हैं। ऊपर की तरफ कुछ चिप्स कुरकुरे वगेरा टंगे हुए हैं।

बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काली रंग की और सफ़ेद रंग की गाय को और जो बंदी हुई है पूरी रस्सियों से उसके गले से लेकर उसके नाक के ऊपर तक रस्सी जा रही है हरे रंग की।

वो किसी ट्रक के अंदर है शायद ट्रक की ट्रॉली में है वो और कुछ बर्फ वगैरह भी वहा पे गिरी हुई है ऐसा लग रहा है।